और लाल रंग की प्लास्टिक की ग्लास रखी हैं।

ऑफिस में बहुत ही ढेर सारे टियूबलाइट लगे हुए है उपर।

और ग्रीन कलर की लाइट भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगो नें सर पर गमछा बांद रखा है।

पार्क के अंदर झूला लगा है दो।